अअअ नदी के साइडस में बहुत सारे पेड़ और फिर कुछ घर भी है और उसके आगे एक अअअ अम्म पानी की --

ये शॉप है इसमें वन मंथ इंट्रेस्ट फ्री --

यहाँ पे एक रोड जा रहा है जो जिसके दोनों साइड्स में अ स्ट्रीट लाइन दिये गये है और--

म्यूजिक म्यूजिक बॉक्स भी लगे हुए है और यहाँ पे आप को अ --

और उसमें आपको कुछ हैंगर्स टाइप की डिज़ाइन भी टंगे हुए है वे गैप गैप में देखने को मिलेंगे।